ये किसी ऑफिस की बिल्डिंग है जो की क्रीम कलर की है। और सामने मे सीढ़ी है जिसका कलर ऑरेंज है। इसमें एक बड़ा-सा लोहे का गेट है। यह गेट पूरा खुला हुआ है।

साइड मे एक व्हाईट कलर का गुम्बज है। उसके पास एक शेर भी बना हुआ है।

ये एक ऑफिस बिल्डिंग लग रही है जिसमे सामने एक गेट है। ये गेट खुला है और अन्दर मे दो-तीन चेयर भी रखे हुए है। उसपे एक-दो आदमी भी बैठकर के है।

जिसके सामने एक ब्लू कलर की चेयर भी रखी हुई है।

यह एक दरिया के किनारे की तस्वीर है जिसमे हरे-हरे घांस उगे हुए हैं और किनारे पर बहुत से लोग भी हैं। और तस्वीर के बाएं साइड में बहुत से पत्थर रखे हुए हैं।

यह ब्रिज देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है।